इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां दो तीन लोग बैठे हुए --

और गमले भी यहां पर नजर आ रहे --

सीढ़ी भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर--

नीचे डस्टबिन भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है यहाँ --

इस इमेज में यहां पर इमारत दिखाई दे रही है नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई --

और दीवार पर पोस्टर भी नजर आ रहे हैं।

नजर आ रहा है।

और वो भी नजर आ रही है।

और यहां पर बड़ा सा शीशा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ --

और पेड़ों की परछाई नजर आ रही --

आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे --